और बिल्डिंग में बहुत सारी खिड़किया है बिल्डिंग का गेट खुला है और यहाँ पे एक गाडी खड़ी है और पेड़ पौधे भी हे हरे हरे घास वाले मैदान है।

यह एक बहुत बड़ा-सा पहाड़ की और इस पहाड़ का रास्ता बहुत लंबा है और इस पहाड़ के रास्ते पे एक आदमी खड़ा है।

बस एक आदमी है।

वो जो औरतों की लाइन है और इस बैंक में बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है।

ये सलून है और इस सलून मे कुछ लोग काम कर रहे है और इस सलून मे बहुत सारी क्रीम वगेराह रखे हुई है।